एक चेयर पड़ी हुई है और पेट्रोल पम्प है खम्बा है तार है पेट्रोल पंप --

जिसमें ब्लैक कलर का गेट है दीवारों का कलर येल्लोइश है ।